सेवेंटी फाइव एम एम कर के दिखा हुआ है और सामने एक बोरी है और निचे में गत्ता रखा है।

हरे भरे घास का मैदान दिख रहा है सामने में झाड़िया दिख रही है ।

हूँ यहाँ पे बॉक्स है सामने में देखेंगे तो ड्रिल है।